साइड पर पेड़ पौधे भी लगे हुए दिख रहे हैं।

यहां पर मसल गेनर के डिब्बे भी दिखाई दे रहे--

व्हाइट कलर के टावल भी पड़े हुए दिख रहे हैं।

साइड पर एक टोकरी भी दिख रही है तार भी दिख रही--

बहोत सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं सामने एक डिश भी पड़ी हुई दिखाई दे रही है।

यहां बहुत सारी फाइलें भी दिखाई दे रही है।

यहां पर एक बहुत बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

यहां एक बड़ा सुंदर पैलेस दिखाई दे रहा है।

यहां पर टेबल और चेयर भी रखे हुए दिख रहे हैं।

यहां पर एक जाली वाली टोकरी में बहोत सारे पैकेट भी पड़े हुए दिख रहे हैं।